और एक महिला नजर आ रही है इहवाँ --

जो की रेड और ब्लैक कलर की नजर आ रही है।

यहाँ पे हमें बहुत सारी भीड़ नजर आ रही है।

बिल्डिंग के ठीक उपर हमे सोलर पेंनल नजर आ रहे हैं।

उसके ठीक बगल में काफी सारी बॉटले रखी हुई है।

और इसमें जो फर्श बनाई गई है वो व्हाइट कलर की टाइल्स से बनाई --

क्यूंकि फर्श को लाइट से सजाया गया है जो की देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा --

कुछ प्रोग्राम आयोजित किया गया है।

और उसके बगल में छोटे छोटे साइज के काफी सारे गुंबद नजर आ रहे है।

और इसके ऊपर लकड़ी रखी हुई है जहाँ पे --

इमारतों में बाम्बू लगे हुए हैं जो की प्रदर्शित करते हैं की अभी इन --

जिसकी दीवारों को ग्रीन कलर से पेंट किया गया है।

तीन लोग नजर आ रहे है जिसमे --

जो की लाल टंकी बाल्टी पे रखा हुआ है।

यहाँ हमे एक दुकान नजर आ रहीं है।

ब्लू कलर के जीन्स और व्हाइट कलर के जूते पहने हुए है।

और इस तस्वीर में हमें एक आदमी भी नजर आ रहा है।

जिसमें की शामान है और उस रिक्शा के द्वारा इसे पहुंचाने के लिए रखा गया है।

और सूट पेहना हुआ है।